यहां पर एक स्टेज बना हुआ है ब्लू कलर का जिसमें यह क्रिसमस मना रहे हैं।

अ यहां पे ये दो बंदे एक अ औरत है और एक मर्द है।

और वहां पे ये कुछ संगीत बनाया हुआ है जहाँ पे पूजा वूजा करते हैं जिसमें आग जलते हैं।

ये एक फिश मार्केट लग रहा है जहां पर बहोत अ सारे लोग हैं।

यहां पे ये मछलियां बेचते हैं और वहाँ साइड में औरत भी बेचती है।

ये भी एक शॉप की फोटो है जिसको पीछे से एक मकान भी बनाया हुआ है जो बहुत अच्छा मकान है ऊपर बालकनी वालकनी बनी हुई है।

यहां पे एक क्लॉक टावर है जिसको जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है ये--

अं ये एक रेस्टोरेंट की फोटो है जहां पे टेबल कुर्सियां सजाई हुई है।

ये भी एक रेस्टोरेंट की फोटो है जहां पे टेबल कुर्सियां लगी हुई है।

और साइड में एक मशीन लग रही है येलो कलर की जैसे ब्रिज जैसा लग रहा है ऊपर से।

ब्लू कलर की पिंक कलर की और यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो योगा कर रहे हैं।

और इसके साइड में एक पुल जैसा ब्रिज जैसा बनाया हुआ है।

बहुत सारे पंखे बने हुए हैं फैन बने हुए हैं ग्रे कलर के हैं सारे।

और वहां पे बहुत अच्छी लाइटिंग भी की हुई है नीचे इस पे टाइल वाइल लगे हुए हैं।

और एक मैसेज कॉल और नंबर लिखा हुआ है और पीछे से एक पहाड़ दिख रही है जिस पे कुछ पेड़ वेड लगे हुए हैं।

इसके ऊपर भी एक बोर्ड जैसा लगा हुआ है जिस पे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है।

ये समंदर की फोटो है जहां पे एक बंदा एक पत्थर पे बड़े से पत्थर पे बैठा हुआ है।

कोई यहां से अ ब्रिक्स विक्स दिख रही है और कुछ मटेरियल है नीचे।

ये एक मंदिर है जिसका दरवाजा खुला है दरवाजे का कलर ब्राउन कलर का है।

यहां इरध गिरध ये पेड़ पौधे भी लगे हुए नीचे थोड़ा थोड़ा घास भी आया हुआ है।

एक रेस्टोरेंट की फोटो है जहां पे कुर्सी टेबल वगैरह सजाए हुए हैं।

के बाहर एक बोर्ड खड़ा है जिस पे लिखा है गेट नंबर चार।

और यहां साइड में इसके वहाँ पे पौधा दिख रहा है।

वहां पे दो बच्चों ने रेड और क्रीम कलर का फ्रॉक पहना हुआ है।

यहां पे एक छोटी सी छो शॉप दिख रही है जिसका शटल का कलर ब्लू कलर का किया हुआ है।

और ऊपर एक बोर्ड चढ़ाया हुआ है जिसमें हिंदी में कुछ लिखा गया है।

पाइप जैसी दिखती है और वहां दीवार का कलर स्काई ब्ल्यू कलर का किया हुआ है।